रेड कलर की पट्टी हुई है जिसपे करेक्ट का निशान बना हुआ है तीन येलो कलर की पट्टियों से।

तथा पास में दो लोग बैठे हुए हैं और दो लोगों में से एक लोगों ने मैक पकड़ रखा है औ कुछ बोल रहे --

और पेड़ पौधे और ऊपर की ओर सीढ़ियां गई हुई हैं और इधर सीढ़ियों के पास में ही एक इस जाल टाइप से और लाइट्स लगी हुई--

एक लोग लेफ्ट साइड है एक लोग राइट साइड है दोनों अपने चापू से नाव को लिए जा रहे हैं।

यह दृश्य मजदूरों का दिखाई पड़ रहा है जो की मोरंग और गिट्टी सीमेंट को मिक्स कर रहे है।

मोरंग है गिट्टी है और तसला भी है और पीछे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह दृश्य किसी होटल या स्कूल या फिर किसी कॉलेज का लग रहा है।

और उनके पीछे एक मुकुट लगा हुआ है जो कि बहुत ही सुशोभित कर रहा है।

ये दृश्य एक पहाड़ों के बीच का दिखाई दे रहा है जहां पे बोहोत सारे लोग बैठे हुए --

और ऊपर व्हाइट कलर की लाइट्स लगी हुई हैं ग्रे लाइट लगी हुई हैं।

पास में ताज महल की फोटो लगी हुई है यहां पे शायद ये लोग अपनी अपनी फोटो क्लिक करवा रहे हैं।

इसमें कई सारे पौधे छोटे छोटे पौधों की भीड़ लगी हुई है।

और यहां पे रेड कलर के पौधे लगे हुए हैं रेड कलर के गमला है।

और पीछे की तरफ दरवाजा साइड में खुला हुआ है जिस पे चुनरी से बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं।

और डुप्लीकेट फ्लावर्स भी लगे हुए हैं पास में एक पेटी रखी हुई--

और यहां पे लोग खड़े हुए हैं और कुछ अपना अपना सामान ले रहे हैं।

जहां पर लोग लाइटिंग्स वगैरा लगी हुई है जहां पर लोग खड़े हैं एक पुलिस वाले खड़े हैं।

इस दृश्य में दिखाया गया है यह पेट्रोल पंप का एक स्थान है।

झालर्स लगी हुई हैं पास में एक स्टैंड रखा हुआ है।

इसमें दिखाया गया दृश्य एक स्विमिंग पूल की तरह है।

जो आस पास में ग्रिल्स लगी हैं वो रेड कलर की लगी हुई हैं।